दो चार मोटरसाइकिले खड़ी हुई है और घर का--

उधर एक वैन टाइप गाड़ी खड़ी हुई है आसपास बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं स्टेज को बहुत ही सजा कर रखा हुआ है ये बीकानेर में रखा गया है फ्लिकपार्को के अंदर --

ये किसी सार्वजनिक गार्डन का नजारा है जहां पर दो बच्चे खेल रहे हैं बहुत सारे लोग घूमने का मजा ले रहे हैं यहां पर बहुत सारे हरे भरे फूल लगे हुए हैं।

जो वी_आई_पी लोग पसंद करते हैं ज्यादातर इंटेलिजन बहुत ही अच्छी है ये दुकान की किसी एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति की हो सकती है क्योंकि ये थोड़ी दुकान पुरानी है।

सामने एक चर्च का नजारा दिखाई दे रहा है जिसमें--

यहां पर बहुत सारी मनुभूति की तस्वीरें लगी हुई हैं और एक कैश काउंटर लगा है एक पानी का एरो लगा हुआ है।

यह किसी होटल का नजारा हो सकता है। ये बहुत ही बढ़िया नजारा दिखाई दे रहा हैं। जहां पर एक प्राकृतिक पत्रों से बनी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

ये प्राकृतिक पत्थरों के बीच और जंगली रास्ते में हो सकता है।

तीन चार बाइक हैं और चार पांच गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं और ये एक नीम का पौधा भी नजर आ रहा है वो बिल्डिंग बहुत पुरानी है उसके आगे की साइड एक टावर भी लगा हुआ है।

यह किसी एक में मूर्ति का दृश्य हो सकता है यानी किसी हॉस्पिटल का दृश्य हो सकता है जहां पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई है।

यहां पर एक डेस्कटॉप बना हुआ ह और पास में एक चेयर रखी हुई है कैश काउंटर बनाया हुआ है।

और इसकी दीवारें भी बहुत पुरानी हैं ऊपर रेड कलर का पेंट किया हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारी लगी है--